हर बैट के सामने बॉल है।

यह एक पुरानी बिल्डिंग है जो तीन मंजिल का है।

कुछ लेडीज हैं कुछ जेंट्स है कुछ लड़कियाँ है बिल्डिंग के --

बगल में एक हरा-भरा पेड़ है।

यह एक अ बना हुआ है।

जो वो काफी बड़ी है सामने बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं और बड़ा सा गेट है कुछ आदमी जा रहे हैं कुछ लेडीज आ रही हैं एक आदमी बाइक पर खड़ा --

यह एक पुरानी बिल्डिंग है।